यु जु तस्वीर छ ये पर अलग अलग डिश छन युं की बणायीं प्लेट पर रखीं छन पिछाड़ी बिटिन पेस्ट्री छन रखीं और केक छन रख्यां अर रसगुल्ला भी छन ये पर दिखेणा।